जिसका बच्च जिसमें बच्चे बहुत ही मनोरंजन करते हैं।

यह बनारस मे घाट की बहुत ही मान्यता है।

और इस मंदिर मे पाठ पूजा तथा यज्ञ आदि कराये जाते है।

यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है।

इसकी सजावट में फूल तथा लत्तर लाइट का उपयोग किया गया है|